गेट पर पोलिस न हो रखी है पूरी अ और बैनर पे कुछ लिखा हुआ है किसी के स्मारक का इनफार्मेशन वहाँ पे है।

यह एक रिलीजियस प्‍लेस्‌ लग रहा है जहां पर एक मूर्ति स्थापित की गई है और इसका इन्टिअरिअर्‌ बहोत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है आगे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है टेबल लगी हुई है।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक आ प्लेस है जहाँ पे काफी विन्डोस लगी हुई हैं।

यहाँ एक लेक है जो जिसके ऊपर एक हाउस बना हुआ है उसके ऊपर टीन शेड लगा हुआ है जिसपर पिंक पेंट हो रहा है और उसके रेलिंगस वाईट कलर की है उसके अंदर इंसान खड़ा है।

और वह व्यू को देख रहा है जो कि बहुत सुर्रियल लग रहे हैं और आसपास खाफी पेड़ दिख रहे हैं और उन पर आ पहाड़ो पर पेड़ दिख रहे हैं और नीचे से जो लेक का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।